और दीवाल पर पंखा भी लटकाया हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे बुलेट की एजेंसी दिखाई दे रही है यहां पर दो बुलेट खड़ी दिखाई दे रही है एक ब्लैक कलर की--

यह तस्वीर द सिटी कैफे की है यहां पे कुछ लोग बाहर खड़े दिखाई दे रहे जो की मैक्सिमम सात आठ लोग हैं।

और पेड़ पौधे लगाए गए हैं ये कोई म्यूजियम जैसा प्रतीत होता है।

ऑरेंज कलर का सूट पेहन कर जाती हुई भी दिखाई दे रही है।